एज घर सजल हो अ रास्ता के ओकर दीवाल मे लाइट लगल हो।

दुगो लाइट दिख रहा है साम के बेला हा और यहाँ लड़का लड़का लोग क्रिकेट की फुटबॉल सब खेल रहा है।

एक लड़का सादका शर्ट पहन ले है एक ठो गुलबिया शर्ट पहन ले है एक ठो करिया शर्ट पहन ले है।

मोटरसाइकिल पे एक बंदा बैठल है।

किराना स्टोर मे तीन आदमी चार आदमी खड़ा है समान लेवे खातिर।

और किराना स्टोर होजिओ लाइफ लिखो लोफ़ोटो स्टूडियो लिखा टो।

एक ठो आदमी जा रहे ले हो और फंशन सजावट हो करल और गुलाबी फूल हो।

गाछ लगल हो गाछ कट्टल हो।

और बगल मे गुलाब के फूल के गमला सब है बीच मे भी फूल हो जेकरा में चमेली के भी फूल हो।

पूरा एकदम खाली मैदान है खाली मैदान जेकर चारों ओर छोटा- छोटा बास हन छोटा- छोटा बास ।